दीवारों पर नीले रंग की रोशनी है।

हरे रंग की घास दिख रही है।

क्रीम कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

प्लेटफार्म की जमीन ग्रे लाल पीले रंग की है।

उगी हुई घास चॉकलेटी रंग की है।